उसके पीछे एक लकड़ी का दरवाजा है।

सफेद रंग की दीवार पर--

नीचे बहोत सारे आदमी और औरतें बैठी हुई हैं।

यहां पर टेंट लगा हुआ है ऊपर।

लकड़ी के बने हुए तीन शौचालय है।

यहां पर चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं।

बराबर में पानी भी है।

इस जंगह पर कांच की स्लेब पर बहोत सारी क्रीम हेयर कलर ऊपर तीन बैग रखे हुए हैं लेडीज एक सफेद पीला लाल।

उनके हाथ में बिना है।

यहां पर एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जो सफेद और नीले रंग का है।

बराबर में खूंटी है जिस पर लोहे की संकल टंगी हुई है।

और ऊपर दीवारों पर पोस्टर लगे हुए हैं।

पोस्टर पर निशुल्क स्वास्थ्य सिवर लिखा हुआ है।

यहां पर इस रोड में पीले रंग की पट्टियां लगी हुई है सफेद लाइन खींची हुई है।

एक नीले रंग की गाड़ी है सामने हरे रंग का दरवाजा लगा हुआ है।

बराबर में एक घर दिखाई दे रहा है जिसका रंग सफेद है।

यहां पर सामने एक नीले रंग का टैंक रखा हुआ है।

ऊपर बहुत सारी मिठाइयां रखी हुई हैं कुछ रसगुल्ले हैं सफेद काले।

लाइटों से सजावट की गई है सामने टेंट का हाउस बनाया गया है।

उनके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा है सेल कार ।

यहां पर लाल रंग का स्टूल रखा हुआ है।

सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिनमें बहोत सारी कांच की खिड़कियां लगी हुई है।

यहां पर बहुत सारे आदमी और औरत दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारी बसे हैं।

सामने एक बिल्डिंग है जिसमें बहोत सारी खिड़कियां लगाई गई है।